ये रूम उम ले के रहते है यहाँ के अम जैसे बैंकिंग वगेरा में काम करते हुए लोग यहाँ पर रहते है जिन अम जिनके लिए गाड़ी पार्किंग के लिए--

नदी के उस पार कई सारे औरते नाहा नाहा रहे है नदी हमेशा पानी बहते रहते है इस नदी कि में हमेशा हर सीजन में--

लकड़ी भी रख लकड़ी भी रखा हुआ है यहाँ का वनावरण भी अच्छा है।